दे रही है लाइट भी जलती दिखाई दे रही है।

कुछ व्यक्ति बाहर खड़े हुए है भीड़ भी नज़र --

जिसके बाहर कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

एक गार्डन की है इसमें एक सर्कल बना दिखाई दे रहा --

जिसके पीछे बैलून से डेकोरेशन हुआ--

बहोत सारे पॉट दिखाई दे रहे हैं।

जो अलग अलग रंग के है।

में बना डेकोरेशन किया हुआ है।

काउंटर पर कुछ किताबें दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे बिच मे सर्कल बना हुआ है।

आदमी खड़ा हुआ है औरत बैठी हुई है।

यह इमेज एक जनरल स्टोर की है।

तरह के समान दिखाई दे रहे हैं।

एक इमेज में बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा --

यह इमे डेहर गांव बालाजी रेलवे स्टेशन की है।

है जो फुलों से सजाया हुआ है।